कोई जगह दिखाई दे रही है जगे काफी बड़ी दिखाई दे रही है जगे काफी साफ दिख रही है सामने एक पेड़ नजर आ रहा है पेड़ को रंग किया गया है।

कारिक्रम हो रहा है यहां पर एक पंडित जी बैठे नजर आ रहे हैं पंडित जी सफेद कपड़ों में बैठे दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ लोग हुए बैठे नजर आ रहे हैं।

सभी लड़कियों ने बाल में गजरा लगाया हुआ है यहां पे काफी सारी लड़कियों ने काफी सारी ड्रेस पहनी हुई है यहां पे काफी सारी टीचर दिखाई दे रही है।

साइकिल की दुकान दिखाई दे रही है साइकिल की दुकान काफी बड़ी नजर आ रही है यहां पर काफी सारी साइकिल नजर आ रही है यहाँ कुछ लड़के साइकिल पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रही है बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है। बिल्डिंग में काफी सारी लाइटिंग नजर आ रही है। बिल्डिंग को काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है जहाँ फील्ड पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है ए.टी.एम. मशीन दिखाई दे रही है एक लड़का ए.टी.एम. के नन्द अंदर नजर आ रहा है।

एक लड़का ए.टी.एम. बाहर दिखाई दे रहा है ए.टी.एम. में लाइट जलती हुई दिखाई नजर आ रही है ए.टी.एम. में गेट दिखाई दे रहा है गेट कांच का नजर आ रहा है गेट खुला हूआ नजर आ रहा है यहां पे ए.टी.एम. पे बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पे एस.बी.आई. लिखा हुआ है।

ये काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ काफी हरे-भरे दिखाई दे रहे हैं। ऑटो के ऊपर एक्स्ट्रा टायर रखा दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

ये ऑटो एक्स पर लगा है यहां पर कुछ ऑटो नजर आ रहे हैं यहां पे काफी लोग बैठे नजर आ रहे हैं यहां पे एक अंकल बैठे नज आ रहे हैं यहां पर एक अंकल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।